यहाँ पर रोड साइड में लाइट भी लगी हुई है और हम देख रहें हैं कि सभी चीज़ बहुत अच्छा है।